इस समाज में यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है नीचे टाइल्सें चमकती नजर आ रही हैं।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

इस इमेज में यहां पर सब्जी मार्केट दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लोग सब्जी खरीदते नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर खाने का टेबल दिखाई दे रहा है जिसपे प्लेट्स और ग्लास नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज मे यहां पर एक पार्क दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ पेड़ भी नज़र आ रहे है।

इस इमेज मे यहां पर मंदिर दिखाई दे रहा है बाहर एक आदमी भी खड़ा नज़र आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर कुछ लकड़ी का सामान नजर आ रहा है एक आदमी खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है यहां पर दो तीन लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक किले की बाउंड्री दिखाई दे रही है जहां पर कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है और यहां पर कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक किला दिखाई दे रहा है और कुछ पेड़ भी यहां पर नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में जहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है और ऊपर निम्स यूनिवर्सिटी लिखा नजर आ रहा है।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

इस इमेज में यहां पर एक रास्ता दिखाई दे रहा है जहां पर एक बड़ा सा चर्च भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर गुब्बारे का डेकोरेशन दिखाई दे रहा है और हैप्पी बर्थडे का स्टीकर लगा नजर आ रहा है।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

इस इमेज में यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है और काउंटर पर कुछ लोग खड़े नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है और यहां पर बड़ा सा पेड़ भी नजर आ रहा है।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

इस इमेज में यहां पर स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है और सामने यहां पर कुछ पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर कुछ दुकाने दिखाई दे रही हैं बाहर मोटरसाइकिल खड़ी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक हाल दिखाई दे रहा है यहां पर कुर्सी टेबल लगे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर देखिएगा स्कूल की बसें खड़ी दिखाई दे रही है और यहां पर कुछ विद्यार्थी भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक नर्सरी दिखाई दे रही है जहां पर पौधे लगे नजर आ रहे हैं।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

इस इमेज में यहां पर एक ढाबा नजर आ रहा है उस पर देखिएगा खंडेलवाल ढाबा लिखा दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है पास में यहां पर एक बड़ा सा पेड़ भी नज़र आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक सड़क दिखाई दे रही है औ पास में यहां पर कुछ तो प्लांट्स भी लगे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर शादी का गेट दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ लोगों की भीड़ भी नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक मॉल दिखाई दे रहा है सामने यहां पर एक लिफ्ट भी नजर आ रही है।